इस तस्वीर में बहुत सारे गढ्ढे बने हुए हैं।

इस तस्वीर में बहुत सारी मछलियां बर्फ में रखी हुई है।

इस तस्वीर में एक व्यक्ति कुर्सी पर बैठ कर अपना वर्क लिख रहा है।

बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं एक डस्टबिन रखा हुआ है।

बहुत सारे गमले रखे हुए हैं उसमें पेड़ लगे हुए हैं।

जिसमें मेट्रो आती हुई दिखाई दे रही है।

मेट्रो की पटरियां दिखाई दे रही हैं।

इस्टेशन के ऊपर छांव के लिए भी बना हुआ है। टाइलें भी लगी हैं।

इस तस्वीर में तीन व्यक्ति मिल कर एक स्टेज की सजावट कर रहे हैं।

पास में ही एक और दूसरी दुकान है।

नीचे डंबल रखे हुए हैं रस्सी रखी हुई है।

टाइलें सफेद और काले रंग की हैं पीछे पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

पास में ही एक डस्टबीन रखा हुआ है।

इसमें बहुत सारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं।

जिसमें एक डस्टबिन भी रखा दिखाई दे रहा है।

कुछ महिलाएं हाथ ऊपर किए हुए हैं।

सामने शीशे लगे हुए हैं लाइटें लगी हुई है।

एक व्यक्ति बैठा हुआ भी दिखाई दे रहा है।

जिसमें एक महिला स्टैचू खड़ा हुआ है।

पीछे साड़ियां और कुर्तियां टंगी हैं।

कुछ बेंचो पे बॉटल रखी हुई है।

ए_सी लगी हुई है लाइट जल रही है।

छत के चारों ओर रेलिंग भी बनी हुई है।

जिसमें बहुत सारा सामान भी रखा हुआ है।

मटके के ऊपर ग्लास रखा हुआ है।

नीचे सफेद रंग का चद्दर बिछा हुआ है।

अंदर जाने के लिए सीढ़ियां लगी हुई हैं।

ऊपर लाल रंग के पकड़ने के लिए लगे हुए--

जिसपे चरपहिया वाहन जाती हुई दिख रही है।